यहाँ सामने एक अ- मंडप दिखाई दे रहा है वहाँ कुछ हरी में दीवार दिख रही है और कुछ ल- सफेद लाइट दिख रही है।

और सामने एक एक दुकान का कमरा दिख रहा है जहाँ पार्टीशन कांच दिख रही है और एक दरवाजा साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई है और बाहर --

य सामने बहोत सी बच्चियां कुछ चॉक से गोल बना ली हैं। इसके बाद रंगोली नीचे रंगोली बनाते हुए दिखाई दे रहीं हैं।

और कुछ उनके पास में कलर की प्लेट भी रखी हुई है और ये दिन का समय है धूप निकली हुई है ।

चटवार है और वहां कुछ उनके पास मछली की जाली रखी हुई दिखाई दे रही है अ और ये दिन का समय आसमान दिखाई दे रहा है अ धूप --